जिसको की बहोत सारे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और जिनसे उनके जीवन में वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जो भी प्रतियोगी होंगे जिनका फर्स्ट अवॉर्ड होगा उनको यह सारे प्राइस दिए जाएंगे और ये जो प्राइस है।

स्कूल के बच्चे हैं उनको काफी कुछ सिखाया जा रहा है और सामने गांधी जी की--

और यहां पे बहोत ही हायली एजुकेटेड टीचर्स है जो इन बच्चों को पढ़ना के लिए आती है।

और यहां पे नीचे बहोत सारे बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं।

और आम रखा हुआ है जोकि सारे पैक्ड हैं ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे फ्रीजर के अंदर पॉलिथीन में भी--

पीछे स्कूल है यहां पे बहुत सारे बसें खड़ी हुई हैं यहां पे पीले रंग की।

अलग अलग तरह कि बसे खड़ी हुई है और एक ये अंकल है ड्राइवर अंकल है जो बाहर निकल रहे हैं।